ये चर्च दिख रहा है जिसमे ब्राउन कलर की दिवाल दिख रही है ऊपर लाइट दिख रही है प्लस का निशान है जिसमे भगवान टंगे हुए है।